इसमें हमें एक ब्रिज दिख रहा है जो कि बहुत ही लम्बा एंव थोडा सा मुथा हुआ है इस ब्रिज के ऊपर हमें एक साइकिल खाड़ी दिखाई दे रही है।

इसमे हमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जोकि बहूत ही सुंदर दिखाई दे रही है इसका कलर पिंक एंड वाईट है इसके बाहर ही कुछ घास लगी हुई है और बहुत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है।